लटकाए गए हैं पीछे साइड में खिड़की है गाय को रस्सी से बांध कर रखा हुआ है।

बहोत ही अच्छा गजरे से सजाया गया है।

सब लोग खड़े हैं बहोत अच्छे अच्छे स्लाइड हैं यहां पर बहोत ही अच्छा व्यू है बहोत बड़ा मैदान है।